और मेहरुन कलर का दुपट्टा लिए हुए सब खड़े हैं यहाँ पे और यहा लोखन का ग्रिल भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर देखिए ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर बहोत ढेर सारे चट्टान भी दिख रहे है और कुछ यहाँ की --

और यहाँ पर लाइट्स वगैरह दिख रही है और बहोत यहाँ पर पब्लिक दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है जिसके अंदर सब लोग है। रात का सीजन है।